और इस पर एक नाम भी लिखा हुआ है सुपर इंजीनियर वर्कस ललितपुर।

ओ इस इमेज में हम एक मदरसा देख सकते हैं जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां हैं।

यहां पर एक स्टेथोस्कोप भी रखा गया है जो कि डॉक्टर कैरी करते हैं।

और यहां पर कुछ और भी लोग जो इस कोयले को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हैं।

इस बैनर पे बहुत सारे डिशेस के भी फोटो है जैसे कि टी काफी सूप सोडा सॉफ्टी --

तो इस इमेज में हम एक बोहोत बड़ा-सा पार्क देख सकते हैं जहां पर बोहोत सारे छोटे बड़े बोहोत सारे बड़े-बड़े पेड़-पौधे हैं।

और यहां पर आने जाने का रास्ता भी है साइड साइड और एक बिल्डिंग भी है जो कि पेड़ों के पीछे छिपी हुई --

बच्चों ने बहुत सारा सामान रखा हुआ है टेबल पर जैसे ग्लू सीजर ।

जिसके ऊपर लिखा है बेलगावी टू धारवाड ए_जि_सी वोल्वो ।

ये लोग आपस में बात कर रहे हैं एक ने येलो शर्ट पहनी है एक ने वाइट शर्ट और एक ने पिंक --

हॉल में खड़े हुए हैं जहां पर इन इन सब्जियों को स्टोर किया जाता--

यहां पर तीन मशीन भी रखी हुई हैं रेड और व्हाइट कलर की इस मशीन से हम ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए हम टिकट निकाल सकते है।

यहां एक दीवार येलो कलर की और इसपे बड़ी सी टी_वी भी लगी हुई है जिसपे ट्रेन के आने जाने का समय बताया जाता है।

और एक में अमलादही पोस्ट ऑफिस लिखा हुआ है यहां पर बहुत सारे लोग भी हैं।

तो इस इमेज में हम दो हाथी को देख सकते हैं एक छोटा सा हाथी और एक बड़ा सा हाथी है।

बड़े वाले हाथी के ऊपर बहोत सारे पेड़ पौधे रखे गए हैं और एक आदमी इन हाथियों को ले जा रहा है।

ऊपर लिखा है सुहेली प्रकृति व्याख्या केंद्र और इसके नीचे एक लड़की भी खड़ी हुई है।

और साइड में चट्टान भी है देखने से लग रहा है ये इमेज सनसेट में ली गई है।

और बोहोत सारी खुले हुए सामान भी हैं। यहां पर ग्रीन कलर का मैट भी बिछा हुआ है और दुकान में बोहोत सारा सामान रखा हुआ है।